तो यहाँ पे काफी सारे--

तो यह दृश्य एक मछली बाजार की है जहाँ पे एक औरत मछली बेच रही है।

जंगल झाड़िया भी दिखाई दे रही है कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।